और बैग दिखाई दे रहे है एक कैमरा दिखाई दे रहा है।

और पानी दिखाई दे रहा है पानी के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

अंदर एक बल्ब दिखाई दे रहा है।

पीछे काफी सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

पोर्टल की एक तार दिखाई दे रही है।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

जहां यहां पर एक रेल गाड़ी दिखाई दे रही है।